हर रंग की बॉल्स हैं इसके अंदर खेलते हैं।

लोग यहाँ पर बोटें भी बोट भी चलती हैं।

सोलर लाइट में धूप पड़ने से एनर्जी अ इलेक्ट्रिसिटी बनती है।

इस तस्वीर में हम लाइब्रेरी देख रहे हैं जहां पे हर तरह की--

ये एक मॉल या किसी भी मार्ट का--

और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है वहां पर आप खेल कर कुछ जीत भी सकते हैं।

हां पीले सफेद लाल आप जैसा भी चाहें खरीद सकते हैं।

यहां पर लोग अपने पैसे जमा करवाने आते हैं खाते में।

बोटलस हैं कुछ ग्रे हैं कुछ हरे रंग के हैं कुछ सफेद रंग के हैं।

जो की हर अलग अलग गाड़ियों में ऑयली डाला जाता है।

बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जहां पर आपको होम थिएटर --

ये एक मोबाइल की दुकान हैं।

अ उस कन स्कूल का नाम है लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी ।